यहां पर तीन लेडिस एक जेंट्स दिखाई दे रहा है।

ये एक फास्ट फूड शॉप दिखाई दे रही है।

यहां पर तीन चार से पांच जेंट्स दिखाई दे रही है।

और बाहर कोल्ड ड्रिंक की फ्रिज में कितनी प्रकार की कोल्ड ड्रिंकें रखी हुई हैं।

यहां पर कितने सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक व्हाइट कार दिख रही है।

और साइड में एक ब्लू कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

वो यह एक लकड़ी की अलमारी बनी हुई है।

और यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

और इसमें पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में रेड कलर की छत्री लगी हुई है।

और कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।